जिसकी एज छे या सात साल है। उन्होंने सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं और गले में एक टाई भी पहनी हुए है।

इस पिक्चर में एक बकरी दिखाई दे रही है जो सफेद और ब्लैक कलर की है ।

और उसके पास उसके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो सो रहे हैं और वह एक बगीचे में एक घास पर बैठी हुई है।

यह एक गाँव नज़र आ रहा है। गाँव में बोहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगह खाली पड़ी हुई है वहाॅं पर कुछ घांस नज़र आ रही है।